और जमीन भी दिख रही है कत्थई कलर की और आगे कुछ खाली जमीन दिख रही है हरी कलर --

एक अपार्टमेंट के बाहर की जगह है। इसके बा इसके आसपास बाउंड्री है ब्लै जालियों की ब्लैक कलर की और एक शेड भी डला है जिसके ऊपर प्लास्टिक की चादरें डली हुई है। साइड में एक रोड भी दिया हुआ है।

थैली में मिर्ची रखी हुई है और वो अंकल बहुत सारी मिर्चियों को साथ कर रहे और एक जो अंकल खड़े है --

सामने एक बहोत बड़ा स्टेज बना हुआ है और यहां वाइट कलर के टाइल्स लगी है।

कुछ लोअर पैने हैं। कुछ नेकर पेने हुए। नीचे ग्रीन कलर का कार्पेट है। साइड है। बड़े-बड़े पेड़ लग रहे हरे कलर --